नाई की दुकान है जहाँ पे हेयर कटिंग हो रहा है दो बच्चे बे एक बच्चा वहाँ पे बैठा है एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा है दो साइकिल खड़ी है एक बाईक खड़ी है दुकान के बगल में एक और दुकान है जिसमे पंखा-ऊंखा बिक रहा हैं।

खेल का मैदान है । यह एक खेल का मैदान है सजाया गया है ।

यहाँ पे सभी लोगो के भी खेल होते है। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन ।

यहाँ पे सभी लड़के लड़के भाग रहे थे खेलने के लिए।